इस तस्वीर के अंदर हमें मिट्टी दिखाई दे रही है जमीन में--

इस तस्वीर में हमें सोफा रखा दिख रहा है।

और बहुत सारी किताबें जमी हुई हैं अलमारी में।

सफेद सफेद आसमान हमें दिखाई दे रहा है दूर तक पेड़ लगे हुए हैं।

जिसमें हमें मूवी भी अ थिएटर में लगे हुए पोस्टर हमें उसके दिखाई दे रहे--

हमें पीछे एक बड़ा सा गेट और उस पर घंटी लगी हुई नजर आ रही है बेल लगी।

ऊपर हमें सफेद नीला आसमान और--

तस्वीर के अंदर हमें सामने मस्जिद दिखाई दे रही है।

बनी हुई दूर तक हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है ।

रास्ता हमें सड़क सून दिखाई दे रही है।

छोटे बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में।

अलमारियां भी ऊपर हमें बनी और गुलाबी दीवार नजर आ रही है।

इस तस्वीर के अंदर हमें लाइट सफेद--

और हमें बाहर बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा--

और लोहा बिछा हुआ दिखाई दे रहा है।

अ बना रहे हैं मजदूर अपने हाथों से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं दूर भी हमें नजर आ रहे हैं आदमी।

और फर्श बना हुआ है उस पर लाल रंग की दीवार हमें नजर आ रही है।

तकिए लगे हुए हैं नीले रंग के भी तकिए हैं दो।

कपड़े भी रंगे हुए नजर आ रहे हैं हमें लाइटें जल रही हैं बल्ब लगे हुए हैं।

दिखाई दे रहे हैं अंदर भी लगे हुए हैं और हमें--

पेट्रोल पंप से आगे भी हमें एक सफेद बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और भी कुर्सी टेबल लगे हुए हैं और हमें--

इस तस्वीर के अंदर नीला आसमान और सफेद बादल दिख रहे हैं।

तस्वीर के अंदर गाड़ियां हैं और आदमी हैं। हमें गाड़ियों पर और पैदल नजर आ रहे हैं।

पेट्रोल पंप हमें दिखाई दे रहा है और--

हमें दिखाई दे रही है एक महारानी है कुर्सी पर बैठी हुई उनकी तस्वीर हमें ये--

कुछ हरे हैं और कुछ पीले पत्ते हमें इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं।

तस्वीर के अंदर एस_बी_आई का बोर्ड हमे नीला--

लोग हमें और चलते फिरते भी दिखाई दे रहे हैं।